फूल लगे हैं यहाँ पे दो गड़िया खड़ी हैं और यहाँ अंदर हरियाली हो रही है पेड़ पोधे लगे हुए हैं और नीचे पत्थर के टाइल्स लगे हुए हैं ऊपर लाइटे लगी हुई--

बहुत बड़ी बिल्डिंग है और यहाँ पर बहुत सारी बड़ी-बड़ी विंडोस बनी है कांच की और बाहर रस्सी पर कपड़े ड़ले हुए है यहाँ पे मैदान मे मिट्टी हो रही है।

और यहाँ पे कुछ गेट भी है औ --

ये एक अंकल खड़े हुए हैं। एक बाइक खड़ी है। एक एक्टिवा भी खड़ी है। यहां पे बहुत सारी लाइटे भी लगी हुई है।